आगे में ग्रीन कलर का हल्का ग्रीन कलर का वाल है।

एक और ब्लैक कलर का तार जा रहा है दो मशीन के पास।

व्हाइट और ब्राऊन कलर का ये शेल्फ और अलमारी हैं।

रैक में एक छोटा सा कुछ है और यहां में स्विच बोर्ड रखे है।

यहा पर रोड खुद रहा है। और एक कैमरा लेकर चेक कर रहा है और कैसे खुलेगा।

ट्रक के बरा वाला जिसमें तीन चक्कर

पेड़ है बहुत बड़ा बड़ा।

ये एक दुकान है यहां पे बहुत सारा बुक रखे--

पे बहुत सारा कलर का बुक है।

नीचे में एक प्लास्टिक भी गिर के है।

सब चीज का अलग अलग पहनी हो --

के कच्चा मिट्टी है।

और स्काई पूरा क्लियर है।

का वो ग्लास है दरवाजा बाहर से देख पाने के लिए।

पीछे में एक तो टेंपल दिखाई दे रहा है।

ऊपर से तार ब्लैक कलर का उसका यह पूरा साफ है।

खाई में बहुत ज्यादा जंगल है लाइट ग्रीन कलर का बहुत सुंदर लग रहा है।

पहाड़ का साइड में छोटे छोटे से रोड का टुकड़ा दिखाई दे रहे हैं।

पीछे में एक रोड दिया हुआ है।